उस इंसान को काफी सारे लोग नीचे बैठ कर सुन रहे हैं।

किताबों का दुकान लग रहा है।

और दूसरा ब्रिज जोकि लोहा का बन रहा है।

और दुकानों पर काफी सारे सामान रखे हुए हैं।

यहां पर काफी सारे पिलर्स बने हुए है।

जहां पर एक बड़ा सा साइन बोर्ड पर बड़े अक्षरों पर यारमीन रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड लिखा गया है।